यहाँ पे मुझे एक फोटो दिखाई दे रही जो की एक बिल्डिंग के अंदर के ऑफिस की है ये ऑफिस बहुत ही सुन्दर है क्यूंकि इसके ऊपर की छत्त को ब्लॉक के द्वारा बनाया हुआ है।